और साइड में जो है साइड में मिट्टी वगैरा है और

आगे पीछे शॉप है ऊपर अ बल्ब लगे हुए है थ्री डी ।

यहाँ पे रखा हुआ है लांड्री ड्राई क्लीनर और जो शॉप है वो काफी अच्छी है और काफी डिसेंट शॉप है।

एक ऑफिस है ओर यहाँ पे जो है केलेंडर वगैरा लगा हुआ है लैपटॉप पी.सी. यहाँ सबके पास है प्रिंटर वगैरा भी लगा हुआ है।

और तीन लोग हैं जो की इस दुकान के ऊपर खड़े हुए हैं |

और चेक प्रिंटेड है और यहां पर जो है थ्री डी प्रिंटेड है।

ये एक बिल्डिंग है जो की काफी बड़ी है।

और यहां पे तीन चार लोग हैं जो की बैठ के खा रहे --

बहोत सारे लैपटॉप्स हैं।

थोड़ा सा दूर एक गाय है।

और यहां पे जो है अ बच्चे से लेके बड़े हर कोई इन झूले पे बैठा हुआ है।

बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटो है और --

ऊपर कान्टैक्ट नंबर भी दिया है।

जो कि खेत की है और अ पोस्टरस और बैनर वगैरा लगे है ।